बहोत से पेपर रखे हुए हैं और साइड में एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में--

साइड में एक खंभा है जो कत्थई कलर का है नीचे बहोत सा सामान--

लगा है जो कथाय दिख रहा है बाहर बहोत सारी सीढ़ियां बनी है जिनके नीचे दो आदमी--

चिप्स टंगे हुए हैं सामने बहुत से पेड़े हैं।

जो नीचे सफेद कलर के हैं साइड में एक कार खड़ी हुई है मोटरसाइकिल है ऊपर भी--

और भी बहुत सारी चौउमीन मैगी नूडल्स छपी हुई है।

सफेद कलर की है और पीछे बहुत से रैक है जिनमें सामान रखा हुआ है नीचे पेपर--

दिखाई दे रहे हैं ऊपर सफेद नीला आसमान दिख रहा है।

लोहे की ग्रीन जाली लगी हुई है और पीछे बहोत से--

एक गाय दिख रही है और कुछ बच्चे दिख रहे है।

छत में पंखे हैं और सामने की दीवाल ऊपर सफेद नीचे--

नीले कलर की है और एक बड़ी काली टेबल डली है। साइड --

यहाँ एक घर दिख रहा है जिसमें अभी कलर नहीं हुआ है जिसके बाहर दीवार से टिक्के बहुत सारे लोहे --

यहां एक हॉल है जिसमें बहोत सारी टेबलें लगी हुई हैं जिन पर--

झालर लगे हुए है जिनमें लाइट जल रही है और सामने कुछ गुब्बारे दिख रहे हैं।

यहां बड़ी बहोत सारी टेबल लगी हुई है जिनके ऊपर सफेद प्लेट रखी हुई है और--

कुर्सी है जिन पर पिंक तकिए रखे हैं और पीछे दीवाल पर लाइट लगी हुई है और --

यहाँ एक हॉल में पांच लड़कियां नाक मूंधे पाल्टी मार के बैठी हुईं हैं जिनके नीचे अलग अलग कलर की--

कलर की है जिसपे पानी की बॉटल कांच के गिलास प्लेट रखी हुई है और ऊपर--

यहाँ दूर एक बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जो सफेद और ब्लैक एंड व्हाइट --

बहुत से पेड़ हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही हैं ऊपर आसमान सफेद और ब्लैक एंड व्हाइट --